एक दूल्हा एक दुल्हन बैठे हैं। एक पंडित जी बैठे है।

एक सेक्शन में फूलगोभी रखी हुई है।

गेट के साइड में दो पिलर बने हुए हैं। पिलर वाइट कलर के है।

सामने एक छोटी सी बगीची है।

आदमी ने व्हाइट हूडी और ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ है।

सामने एक एल ई डी लगी हुई है। इसके साइड में ब्लैक कलर की चेयर्स लगी हुई हैं।